यह एक घर है सामने दरवाजे हैं बाहर सामान पड़ा है पास में अलमारी पड़ी है यह एक बहुत बड़ा घर है।

यह एक बहुत बड़ी जगह है यहां पर टाइल से लगी हुई है सामने गेट बने हुए हैं पास में एक सोफा रखा हुआ है।

ये एक बहोत बड़ा गार्डन है यहां पर एक जीप खड़ी है पीछे हरे भरे पेड़ है रास्ते रोड यहां पर खूब सारी मिट्टी है उस पे घास है।

यह एक जगह है यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं पीछे भी बहुत सारे लोग है यह एक बहुत बड़ी जगह है और पीछे हरे भरे पेड़ हैं।

यह एक बहुत बड़ी जगह है यहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं यहां पर बहुत सारा सामान भी पड़ा है सामने ड्रम भी पड़े हैं यहां बहुत सारे लोग खड़े हैं यह बहुत बड़ी जगह है।

ये एक बहोत बड़ी जगह है यहां पर एक टेबल पड़ा है टेबल के ऊपर खूब सारा सामान है सामने बहोत सारे आदमी बैठे हैं।

यह बहुत बड़ी जगह है यहां पर झोपड़ियां बनी हुई हैं झोपड़ियों के अंदर कुर्सियां पड़ी हैं और टेबल पड़े हैं टेबल पर सामान पड़ा है और कुछ लोग भी बैठे हैं।

यह एक बहुत बड़ी जगह है यहां पर एक --

यह बहुत बड़ी जगह है सामने दो बोर्ड बने हुए हैं इधर एक आदमी भी खड़ा है सामने।

रोड पर गाड़ियां चल रही हैं बे ऑटो रिक्शा और बाइक भी चल रही है।

रोड पर गाड़ी चल रही है सामने बहुत सामने दुकानें हैं गाड़ी पर आदमी भी बैठा है।

यह एक बहुत बड़ी जगह है सामने आदमी खड़े हैं यहां पर म--

यह एक जगह है यहां पर एक खुर्सी पड़ी है उसके पास में एक टेबल पड़ा है टेबल पर खूब सारा सामान पड़ा है उसके पास में भी एक टेबल पड़ा है उसमें भी खूब सारा सामान पड़ा है यह बहुत बड़ी जगह है।

यह एक जगह है यहां पर बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रखा है यह शादी की जगह है सामने बहुत अच्छा --

ये एक जगह है यहां पर खूब सारी कुर्सियां पड़ी हैं यहां पर खूब सारा सामान पड़ा है सामने एक गेट भी लगा हुआ है बाहर सीढ़ियां हैं यहां पर एक टेबल है टेबल के ऊपर भी सामान पड़ा है।

ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है सामने बहुत बड़ी रेल खड़ी है लोग भी है बहुत सारे ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है।

यह एक जगह है यहां पर एक बस खड़ी है बस के बाहर एक आदमी खड़ा है पीछे हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं बस के अंदर खूब सारे--

कुछ लोग अंदर खड़े हैं कुछ लोग बाहर खड़े हैं अंदर बोहोत अच्छा डेकोरेशन हो रखा है।

यह एक बहुत बड़ी जगह है यहां पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है यहां पर खूब सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ी जगह है यहां पर बहुत सारे पत्थर है सामने पहाड़ है ऊपर आसमान है पहाड़ पर हरी हरी घांस है।

ऊपर पहाड़ है और हरे भरे पेड़ हैं सामने एक औरत है जो कि पत्थर के अंदर है।

बहुत सारे लोग हैं गार्डन में हरी भरी घास है यह बहुत बड़ा गार्डन है बहुत सारे लोग हैं सामने सामान भी पड़ा है।

काउंटर के अंदर सामान है यहां पर एक बेंच पड़ी है इधर एक टेबल है टेबल पर भी खूब सारा सामान पड़ा है।

सामने काउंटर में भी खूब सारा सामान है एक टेबल है टेबल पर खूब सारी किताबें पड़ी हैं।

आसपास में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

टायर रखे हुए है यहां पर टायरों का खूब सारा समान पड़ा है।

ये एक जगह है सामने एक टंकी पड़ी है सामने पानी का पाइप लगा हुआ है और पास में एक कार भी खड़ी है यह एक छोटी सी जगह है।

यह एक जगह है यहां पर छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं जो की कलरफुल ड्रेस में है सामने एक दुकान है वहां पर सीढ़ियां है वहां दुकान के अंदर भी लोग खड़े हैं।

एक बहुत बड़ी जगह है सामने एक बहुत बड़ी--

यह एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है यहाँ पे खूब सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं कुछ लोग भी खड़े हैं जो की पेट्रोल भरवा रहें हैं ये बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है।

यह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है अंदर लोग खड़े हैं बाहर खूब सारी गाड़ियां खड़ी है यहां पर।

जमीन है सामने एक गेट लगा हुआ है वहां पर दो बच्चे हैं आसपास में घास लगी हुई है सामने बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं सामने--